यह फोटो में एक दुकान है जहां पे बहोत सारे लकड़ी है।

और यहां पे एक फ्रिज है जो एल_जी कंपनी का है।

यह फोटो में एक लड़की है जो डांस कर रही हैं।